ये एक पूल है। नीचे पानी चल रहा है। ऊपर में गाड़ी चलने का --

कांच के पीछे मकान बहुत अच्छा है और इसका रेलिंग उलिंग भी बहुत अच्छा है और कलर कूलर कलर उतना अच्छा नही है अ ऑफिस का। लाइट कलर में है।